और पीला कलर से कलर किया गया यहां --

जहाँ बहोत सारे अम बहोत सारे ही छोटी-छोटी चटाईयां नजर आ रही है।